बाइक से जाते हुए दिखाई दे रहे हैं और कुछ लोग आते हुए दिखाई दे रहे हैं। बहुत बड़ा मेला लगा हुआ है। बहुत अच्छी-अच्छी लाइटिंग वगैरह सब दिखाई दे रही है। बहुत सुन्दर मेला लगा हुआ है। उसी के सामने बिल्डिंग वगैरह भी दिखाई दे रही हैं ।

यहाँ कुछ मिल्क शेक वाला दिखाई दे रहा है पोस्टर और दूकान दिखाई दे रही है।

यहाँ एक फ्लावर की दूकान दिखाई दे रही है। टेडी वगेरह बहुत प्रकार के दिखाई दे रहे हैं।